ग्रॉसरी के समान और अलग अलग कंपनी के शैंपू पेस्ट साबुन--

तिरंगा झंडों का कलर की लाइटिंग से सजाया हुआ दिख रहा है।

एक दवा खाना दिख रहा है जो कि--

एक आदमी टेबल पर बैठे हुए अपना वर्क करते नजर आ रहा है।

साथ ही में वहां पर एक बड़ी सी टी_वी लगाई हुई नजर आ रही है।